बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने बहुत सी कार खड़ी दिखाई दे रही --

प्लास्टिक की एक बड़ी सी चाबी भी वहाँ पर रखी है। पीछे की तरफ एक नीले रंग की शटर लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक लड़का हाथ में पाइप लिए पेड़ों में पानी सिचता हुआ --

एक घमेला रखा दिखाई दे रहा है बाजू में रेती भी रखी हुई है।

कलाकृतियाँ करते हुए दिखाई दे रहे है उनके हाथ में रंग बिरंगे पेपर भी रखे हुये है।

के बगल में एक मालगाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है बैठने के लिए चेयर दिखाई दे रही है।

दुकान के ऊपर में चिल्ड्रन बुक्स लिखा दिखाई दे रहा है वहा सम्मान --